बादल बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है।

नदी में एक नाव चलता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है।

उसके सामने बहुत सारी मालाएं पड़ी हुई है ज़मीन पर साइड में एक नारियल भी रखा हुआ है।

जिम् में बहुत सारी लाइट लगी हुई है सारी लाइट व्हाइट कलर की लगी हुई है।

एक सामने बड़ा सा पत्थर भी रखा हुआ नज़र आ रहा है।

स्टेशन बिल्कुल मेट्रो स्टेशन जैसा दिख रहा है ब्लैक कलर की कुर्सियां रखी हुई है चार --

आसमान भी दिख रहा है आसमान में सफेद सफेद भी आसमान दिख रहा है।

छोटी-छोटी फोटोस भी लगी हुई है।

रास्ते में तीन-चार लोग जाते हुए नज़र आ रहे हैं।

सामने की तरफ तीन चार पेड़ भी दिख रहे हैं।

टेबल है टेबल पर एक ट्र ट्रे मै रखे हुए है।

बहुत ही अच्छे तरीके से डिश को डेकोरेट किया गया है।

साइड पे एक ब्ले प्लेट भी रखी हुई है।

एक रोड है रोड के साइड में एक घर बना हुआ है।

एक होटेल होटेल का काउंटर नजर आ रहा है।

काउन्टर के सामने एक ब्राउन कलर का सोफ़ा रखा हुआ है।

काउन्टर के बगल में एक अलमीरा बनी हुई है उसमें बहुत सारी बुक्स रखी हुई है।

पीड़ियां भी बनी हुई है।

साइड में सीढ़ी भी दिख रही है सीढ़ी के साइड मै एक गमला भी है।

ये शॉप बारबर की शॉप है।

एक बहुत ही बड़ा सा एयरपोर्ट जैसा मैदान है।

स्विमिंग पूल है स्विमिंग पूल में ब्लू कलर का पानी है।

ये चादर बिछी हुई है दो खिड़कियां खुली हुई नज़र आ रही है --

साइड मै एक व्हाइट कलर के कपड़े से बॉंन्ड्री गिरा हुआ है उसके पीछे दो बड़े बड़े पेड़ निकले हुए है।

साइड में एक छोटा सा घर भी दिख रहा है रास्ता भी बना हुआ है सब कुछ पिंक कलर का नजर आ रहा है।

पेड़ के उपर एक स्टार जैसा डेकोरेट किया गया है सामने दो चार बाइक भी खड़ी हुई है।

बनी हुई है पैलेस के सामने दो तीन लोग भी खड़े हुए नज़र आ रहे हैं।

ऑफिस के बाहर दो तीन कार खड़ी हुई है एक रेड कलर की कार है उसके पीछे वाइट कलर की भी कार खड़ी हुई है।

एटीएम के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए दिख रहे हैं एक येलो कलर की साड़ी पहनकर आंटी खड़ी हुई हैं।

बगल में एक बड़ी अंटी फैरी हुई हैं।

बहुत ही अजीब-अनीब प्रकार की पेंटिंग बनी हुई है छोटे-छोटे रूम जैसा कुछ बना हुआ है।

एक मैरिज हॉल है मैरिज हॉल का एक स्टेज एरिया है।

सामने एक पेड़ बना हुआ है पेड़ के नीचे एक छोटा सा खाने का स्टॉल भी बना हुआ है।

एक स्टेशन है स्टेशन की सीढ़ियां नज़र आ रही है।

ऊपर टीन का शेड्स भी नजर आ रहा है आसमान दिख रहा है।

सामने बहुत सारे टॉइस बैलून रखे हुए हैं।

एक गोदाम है गोदाम बहुत बड़ा नजर आ रहा है।

उसके ऊपर दो लड़के बैठे हुए हैं सड़क है।

एक वाइट कलर का घर है घर काफी बड़ा सा नजर आ रहा है।

मगबरे के ऊपर एक मूर्ति बनी हुई है मूर्ति के पीछे एक क्रॉस का साइन बना हुआ है।

एक बहुत ही अच्छा सा कार्य किया है।

वाइट कलर की बाउंड्री भी बनी हुई है।